किसी जगह पर रोड के किनारे काम्प्लेक्स बना हुआ है जिस पर एक बड़ी सी क्लॉथिंग शॉप खुली हुई है और यह एक फ्रेंचाइजी भी है इस--